हमें यहाँ पे बहुत पुराना एक हवेली देखने को मिल रहा है हवेली के दीवार पे ईट लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक बड़ा सा एक पार्क देखने मिल रहा है पार्क के अंदर हमे यहाँ पर--

साइड में हमे यहाँ पे भगवान का मंदिर देखने को मिल रहा है जिसपे दीप रखा हुआ है।

हमें लाईट देखने को मिल रहा है जिसमें से वाईट कलर का लाईट हमें देखने को मिल रहा है।

हमें यहाँ पर यह फ़ोन रखने को मिल रहा हैं ऊपर हमें यहाँ पर स्टेज देखने को मिल रहा हैं स्टेज पे हमें--

साइड में हमें यहाँं पर साउंड का बहुत देखने को मिल रहा है यहाँं पर हमें माइक देखने को मिल रहा है साइड में है छोटा सा --

हमें यहाँ पर रोड दिखने को मिला रहा है रोड के सामने हमें यहाँ पे--

पर हमें आसमान देखने को मिल रहा है पास में हमें--

बगल में हमें यहां पे पानी का कैरेट देखने को मिल रहा है पानी के--

हमें यहाँ पर बाजार देखने को मिल रहा है बाजार पर हमें--

देखने को मिल रहा है वहीं पे हमें लोहे का--

साइड में हमें यहाँ पे बहुत सारे मछली देखने को मिल रहे है वही पे--

हमें यहाँ पर एक बड़ा सा मल्टीप्लेक्स का फोटो देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें--

मोटरसाइकिल कितने में मिल रहा है जिसके ऊपर काला कलर का पन्नी से जो जापा दिया हैं साइड में हमे यहां पर बहुत सारे--

हमें तो हम तो यस यहाँ पे ग्राउंड देखने को मिल रहा हैं ग्राउंड में मुस्तेद पेड़ देखने को मिल रहा हैं पेड़ पे बच्चा पकड़ा हुआ है।

पोल देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ है ऊपर में हमें यहां पे गुरुद्वारा देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर एक बड़ा सा त्रिशूल टाइप का बना--

हमें यहां पर भारतीय इंडियन भारतीय डाक लिख कर देखने को मिल रहा है वही पे --

पीला पीला घर क दो तीन तीन लाइन में बना हुआ देखने को मिल रहा हैं पर मिल रहा हैं इस कलर का पेंट किया हुआ देखने को मिल रहा हैं नीचे में हमें --

मंदिर के साइड में हमें यहां पे एक बड़ा सा लोहे का गेट देखने को मिल रहा है जो कि--

बहुत सारे हमें यहां पर टोपिया देखने को मिल रहे हैं।

हमे बोहोत सारे फुटबॉल देखने को मिल जाए फुटबॉल ग्राउंड देखने को मिल रहे है वही पे हमे--

टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल में हमे यहाँ पर--

डब्बे के सामने हमें गेट देखने को मिल रहा है गेट के बगल में हमें यहाँ पे सीढ़ी दि----

हमें इस तस्वीर में जिम देखने को मिल रहा है जिम का--